भैया लोग भी अपना समान बना रहै हैं और यहाँ पे ए_सी वगेरा।

ये पार्क है और काफ़ी बड़ा पार्क है और यहाँ पे बहुत सारे आदमी आते है और यहाँ पे--

रेस्ट करते है चढ़ के यहाँ पे छत्ता जैसा बना हुआ है।

बड़ा दुकान है यहाँ पे ठंडा कोल्ड्रिंक सब कुछ मिलता है और बहोत सारे आदमी अपना लेके जाते हैं और काफ़ी दूर--

एक पार्क है और काफ़ी बड़ा पार्क है और यहाँ पे सब कोई घुमने के लिए आते है।

खड़ा है और फ़ोटो लिया हुआ है छतरी के नीचे में और --

बैठने का है और यहाँ पे डस्टबिन रखा हुआ है और काफ़ी --

--का जूस निकाल के बेचता है और यहाँ पे काफ़ी सारा फल योर--

और मेटल जैसा लाइट जल रहा है और चारों तरफ बादल छाया हुआ है और काफ़ी --

वहां पे कॉलेज है और काफ़ी प्यारा कॉलेज है और यहाँ पे बहुत सारे आदमी आते हैं पढने के लिए दूर दूर से --

यहाँ पे बादल छाया हुआ है ब्लू ब्लू और काफ़ी घना जंगल है पहाड़ों के बीचो - बीच --

बच्चे लोग आके अपना प्रैक्टिस करते है और पीछे क्रिकेट का ग्राउंड हैं।

टीचर ट्यूशन पढ़ा रहै हैं बच्चे लोग को--